इस तस्वीर में जो दृश्य दिख रहा है यह एक दुकान का है।

ट्रैक्टर जहां पे खड़ा है उसके चारो बगल बहोत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इस चर्च के अगल बगल बहुत सारे लाइटें लगाई गई हुई हैं।

इस घर के ऊपर ब्लू कलर का टिना रखा हुआ है।

इस फोटो में भिंडी मिर्चाये भी रखे हुए हैं।

इस मूर्ति के मुंह को ब्लर कर दिया गया है।

यहां पे का मौसम बहोत ही शानदार लग रहा है।

इस दुकान में रैक में सारी पैंट थिनर विनर की सामान रखा हुआ है।

यह ऑडिटोरियम बहोत ही बड़ा है।

इस ऑडिटोरियम के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी भी खड़ी है।

इस बैंक की बिल्डिंग का कलर पूरे ब्लू कलर से किया गया है।

इस बैंक के बिल्डिंग के सामने दो गाड़ियां खड़ी हुई है।

यह लाइट गोल्डन कलर की लाइट्स है।

इस तस्वीर में जो दृश्य दिख रहा है इसमे बहोत सारी र्मीचाईयां बिखरी पड़ी हुई हैं।

इस मिर्चाई के बीच में किसी चीज को ब्लर कर दिया गया है।

इस तस्वीर में जो दृश्य दिख रहा है या किसी रेलवे स्टेशन का है।

यहां पे बहोत सारे व्हाइट कलर के अंब्रेले लगे हुए हैं।